लोहे के पाइप दिख रही है जो की मशीन के अंदर डलते हुए दिख रहे है साइड में एक इन्वर्टर दिख रहा जो की नीला कलर का दिख रहा जो की बहुत ही बड़ा इन्वर्टर लग रहा है पीछे पहाड़ दिखा रहे है जो की बहुत ही बढ़िया बहुत ही सुंदर बहुत ही अच्छे लग रहे बुलडोजर वाली मशीन दिख रही है जो की बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारी बहुत ही अच्छी--

पेड़ दिख रहे जो की हरे हरे दिख रहे हैं जो की बहुत ही सुंदर लग रहे पीछे हमको बेंचें दिख रही जो की लाल पीली और हरी दिख रही जो की बहुत ही सुंदर लग रही है नीचे फिसल पट्टी वगैरह गार्डन वगैरह भी बना हुआ --

जैसा कि हम देख सकते हैं सामने हम को बहोत ही सुंदर नजारा दिख रहा है हमको एक शेड दिख रहा है सामने जो कि लोहे का शेड दिख रहा है जिसपे चड़ाव भी दिख रहा है ऊपर जाने का आइट साइड हमको ढेर लगा हुआ है मिट्टी का जो कि दिख रहा है।